कुर्सी टेबल लगे हुए हैं और।

यहां पर बाहर दुकान में झालर लगे हुए दिख रहे हैं।

बाहर गेट पर बहू से प्रकार की लाइटे लगी हुई है।

और पौधे भी लगाए गए हैं रोड पर चार पहिया वाहन खड़ा है।